लिखा हुआ है द एक्शन रूम --

चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ है साथ ही में--

जो की किसी नदी के साथ मिल रहा है काफी बड़ी-बड़ी --

बर्मा उद्यान नगर पालिका निगम कोरबा छ. --

शोल ली हुई है तथा दूसरे ने अपने सिर पर --

हरे रंग फिर नील रंग फिर दोबारा हरे रंग और फिर लाल रंग की--

ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान राष्ट्रीय सेवा योजना उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत --

स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय सेवा योजना ये लिखा हुआ है।

दो-तीन मोटर साईकल और बसेज खड़ी है जिसके साथ ही में --

और दिवार भी साथ में ही है तथा ऊपर बालकनी भी--

लोहै की गिरीस भी लगाई हुई है और काफी हरियाली --

टाटा की कार मौजूद है साथ ही में एक बोस बेशन भी लगा हुआ हैं।

खिड़कियां लगाई हुई है तथा ऊपर भी नतकाशी त्रिभुजा कार आकर की ही की हुई है --